फोल्लोविंग ऑफ़ द फ्री बैंक्वेट चर्च इन नार्थ इंडिया लिखा है और गेट लगा हुआ है।

और स्कूटी खड़ी है मोरण का ढ़ेर लगा हुआ हैं और अगल प पेड़ लगे हुए हैं |

यहाँ पर लाल रंग के गुलाब और कुछ पीले रंग के हलके फूल हैं और पत्तियां हैं और गुलाब के भी फूल हैं इनमे |

समान रखे हुए हैं कुछ बाहर की तरफ कुछ अंदर की तरफ।

अ खिड़की लगी हुई हैं ऊपर की तरफ तीन शेड हैं और कुछ महिलायें वहाँ तीन से चार खड़ी हुई हैं।

और सीढ़ी पर एक महिला खड़ी हुई हैं झाड़ू ले करके और अंदर की तरफ ड्रम रखा है एक और --

कुछ औरतें महिलाएं खड़ी हुई हैं और अ सिलेंडर ऊपर के तरफ एक टंगा हुआ हैं उम्म लाइट लगी --

और सफे पीले रंग की इमेज है और पीछे की तरफ --

यहां पर हमें एक इमारत दिख रही है इमारत हरे रंग की और नारंगी रंग की है पेंट हुआ है इसके ऊपर एस.एम. कॉलेज लिखा हुआ है हाजीपुर।